काफी सुंदर द्रष्य लाग रहियो हैं ये दो बन्दा फोटो खींचा रा हैंदो कॉफ़ी भी है।

यो कोई शादी को सीन लाग रो है खासा लोग बेठे है।